एक बोट लगी हुई है इस एक लकड़ी का पठरा बना हुआ है अ एक आदमी जो के धोती पेहना हुआ है एक बाईक खड़ी हुई है पुल के ऊपर से बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे पीछे बडे-बडे अ पेड़-पौधे नज़र आ रहे--

पुल बना हुआ है जिसके नीचे तालाब है तालाब के अंदर बहोत सारे लोग डुबकियां लगा रहे है आस पास केलो के पेड़ लगे हुए है।

हॉल है जिस मे बहोत सारी कुर्सियां लगी है सब के ऊपर वाइट कलर का कपडा और पीले कलर का बो बना हुआ है।